एक फोर व्हीलर खड़ी है और एक जिप्सी भी खड़ी है। अ यहाँ पर बाइक्स भी हैं एंड --

यह एक कांच के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर ग्रीन कलर की कुछ लाइटिंग भी की गयी है।

यह एक सेमीनार हॉल है।

म्यूजियम के अंदर का है जहाँ एक टेबल है और एक चेयर रखी हुई है और कुछ स्टैचू भी रखे हुए किसी-किसी भी रखी है।

जो ब्राउन कलर में है। बाहर ये कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं और संग्रालय के ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है।